किसी किसी का फेस ब्लर करके है और किसी किसी का दिखाके है।

और छोटा सा बेसिन भी है और बहुत सारा शैंपू लोग का डब्बा दिखाई दे रहा है।

नीचे का फ्लोर जो व्हाइट है और ऊपर भी व्हाइट है।

और वाइट कलर का फैन दिखाई दे रहा है और इंसान का हाथ भी दिखाई दे रहा है।

नहा के और इनलोग का शक्ल को ब्लर किया हुआ है।

चारों ओर बहोत बड़ा बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा पत्थर लोग भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे भी बहुत ज्यादा ग्रास लोग दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

साइड साइड में ऊपर रेलिंग दिखाई दे रहा है।

साइड साइड में बहुत सारा पोस्टर लोग भी दिखाई दे रहा है।

दूर में एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा हैं स्कूटी दिखाई दे रहा हैं।

नेवी रूम से उन लोग का टीना का कलर ब्ल्यू है और बाहर में लाइट जल के।

बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।

और यहां में बहुत सारा अलग अलग रंग का दरवाजा रख के है और एक इंसान भी है जिसका शकल ब्लर कर के है।

और यहां में फूल से भी डेकोरेशन करके है और बहोत सारा लाइटिंग भी किया गया है।

दुकान के अंदर में बहोत सारा सामान है और सिसा का अंदर में बहोत सारा केक लोग भी रखे हैं।

ये तस्वीर में एक क्लास दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा बेंच और डेस्क लोग रखें है और रोड लाइट भी दिखाई दे रहा है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा टावर लोग दिखाई दे रहा है।

और बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में बहुत ज्यादा छोटा छोटा ग्रास लोग दिख रहा है।

ये तस्वीर में एक ठो शोरूम दिखाई दे रहा है।

कलर जो ब्राउन है ऊपर चारों ओर व्हाइट कलर से है।

बहोत बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।